यह है और एक व्यक्ति हाफ पैंट और गंजी पहन के खड़े हैं एक बैठे हुए हैं जो कुछ छान ओन रहे है।

इस तस्वीर में ए_ए एंड चिल्ड्रन एकेडमी कटिहार--

उसके दूरी पर कुछ लाल टाइप का दिखाई दे रहा--

अच्छा से किया गया है जो सुनहरा रंग का है और लाइट यहां पर जल रही है।